केंद्रीय विद्यालय दिख रहा हैं और मैदान भीं हैं पेड़ पौधे भीं दिख रहें--

स्लीपर दिखाई दे रही है चित्र के अंदर काफी काफी दिख रही है चित्र के अंदर टी शर्ट दिख रही है।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

माला डली है और पर्दे भी दिख रहे है और एक पोस्टर भी दिख रहा है।

और कार खड़ी दिख रही है सूखे पेड़ भी दिख रहे हैं और--

ऑटो दिख रही हैं स्कूटी दिख रही है और साइकिल दिख रही है और काफी लोग आते-जाते दिख रहे हैं और लाइट के खंभे दिख रहे हैं।

बैलून के डेकोरेट किया गया है और माला भी डली है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं।

कुछ कुर्सियों में बैठे हैं और कार खड़ी है और एक आदमी खड़ा है।

जहां टेबल दिखाई दे रही है और ए_सी दिखाई दे रही है और पोस्टर लगे दि दिख दिख रहे है और खिड़की दिख रही है।

दिखाई दे रही है और एक आदमी बैठा है बैलून्स दिखाई दे रहा है और--

मुझे एक चित्र दिखाईं दे रहा है। चित्र के अन्दर एक हॉल दिखाई दे रहा है।

मॉल दिखाई दे रहा है और उसमे कपड़े दिखाई दे रही है टी शर्ट पैंट दिखाई दे रहा है और कुर्ता पैजामा दिखाई दे रहा है।

और एक पुल दिखाई दे रहा है और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

लोहा दिख रहा है और खंभे दिख रहे हैं और मिस्त्री दिख रहे हैं तगाड़ी दिख रही है और छड़ दिख रहे हैं और --